यह एक एन_जी_ओ का कार्यालय है।

कुछ लाइट लगी हुई है।

लड़के ने व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर की पेंट पेहन रखी है।

यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का फोटो है।

ऊपर कि ओर कैलेंडर रखा हुआ है।

सामने की ओर कुछ चेयर दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे चाय के पौधे दिख रहे हैं।

सामने की और रेड कलर की बाइक रखी हुई है।

सामने की दीवार में एक झंडा लगा हुआ है।

पीछे की ओर नीले कलर के बोर्ड में विवो लिखा हुआ है।

इसके पास में एक और घर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग खड़े हैं।

पीछे बहुत सारे पेड़ है।

एक लड़का ऊपर से नीचे की ओर रथ को देख रहा है।

सामने कुछ सामान रखा हुआ है नीचे की तरफ।

पीछे की तरफ ममी पोको पैंट का पैक टंगा हुआ है।

यह एक ए_टी_एम की तस्वीर है।

और इसको रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया है।

यह एक ब्यूटी पार्लर है।